स्कूल में लाल रंग की बोडरे और सफेद रंग की पेंट्स हुई है।

गाड़ी के आगे वाला बोनेट खोल दिया गया है।

इस पेट्रोल पंप मे बहोत सारे लाइटे लगी हुई है।

एक टेम्पो भी है और एक कुर्सी भी दिख रहा है।

उसके ऊपर वह काले कलर की पेंट लगी हुई है।

एक लोग में लाल रंग की बैग रखी हुई है।

ऊपर मैं एक आदमी बैठा हुआ है।

में तीन चार बच्चे एक महिलाए हैं और तीन चार लोग खड़े हुए हैं।

एक कपड़े की दुकान है इस कपड़े की दुकान मे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

इस साइड आठ दस बाल्टी झूल रही है।

कपड़े मे बहुत सारे शर्ट हैं टी शर्टे हैं गंजी दिख रही है।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

इस रूम की दीवार ने सफेद कलर से रंगी हुई है।

फील्ड में सुखी सुखी सुखी घास है और रनवे पर ढलाई किया गया है।

नीचे साइड मे भी पेड दिखराई दे रहे है।

इसमें एक ब्लू रंग का पानी का टंकी दिख रहा है।

एक लोग शर्ट और गंजी पहन के खड़ा है।

कुछ घर का रंग लाल है कुछ घर का रंग पिला है कुछ घर का रंग सफेद है।

बगल में एक टॉवर चौक दिख रहा है और नीचे में दस पंद्रह लोग घूम रहे हैं।

बेड़ में सफेद रंग का चादर लगी हुई है।

और तीन चार खाले की समान रखी हुई है।

सलाद भी हैं दो तीन मिठाईयां भी रखी है।

लिखा हुआ है अंधेरा बैंक ए_टी_एम एक्सिस बैंक और ऊपर में लिखा हुआ इंटरनेट है गोल्डन लॉन लिखा हुआ है।

और एक आदमी है जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है और सफेद रंग की जींस पहनी हुई है।

दुकान मे शैंपू के सारे डब्बे दिख रही है।

बहुत सारी टिकलियाँ दिख रही है ऊपर में बहुत कुछ लटकाया हुआ है।

और नीचे में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

एक पेड़ भी दिख रहा है पीछे साइड बोर्ड भी है जो चमक रहा है।

में बहुत सारे बच्चे लोग बैठे हैं।

बहोत सारे नंगे नाह रहे हैं बहुत से लोग खड़े हैं।

एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है।

इस बगीचे के साइड में बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ हैं।

और सफेद रंग का है एक आदमी रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा है।

बहोत सारी मिट्टी है घर के अंदर और साइड में एक पेड़ है हरे रंग का और पीछे में बगल में हरे हरे घास रखे हुए है।